इस इमेज में हमें कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है दुकान में हमें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर हमे सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

कुछ कपड़े रखे हुये दिखाई दे रहे है और बाहर एक बल्ब जलता हुआ दिख रहा है एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैं जो सफ़ेद रंग--

सामने हमे बॉउन्ड्री दिखाई दे रही हैं और कोने पर हमे बड़े बड़े पेड़ भी दिख --

इस इमेज मे हमे एक हाल दिखाई दे रहा हैं हाल मे हमे मंडप दिख रहा हैं उसमे हमे कुछ पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे है जो गुलाबी और पीले रंग के है फूल दिखाई दे रहे है जो ऑरेंज लाल पीले रंग के--

इस इमेज मे हमे एक मेला दिखाई दे रहा है मेले मे हमे रोल कोस्टर दिखाई दे रहा है वो सामने हमे पानी भी भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

खेत मे हमें घास या पत्ती दिखाई दे रही है और फसल दिखाई दे रही है सामने हमें बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और एक पेड़ पर फल लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने हमें आसमान दिख रहा है जो सफेद रंग का है।

सफ़ेद रंग का एक टेंट दिख रहा है और उसमे हमे लाल और पीले रंग भी दिख रहै हैसामने हमे टेबल और चेयर भी दिखाई दे रही है टेबल पर हमे लाल रंग का कप--